एक गमले में लाल कलर के दो फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक वाहन के पीछे स्टॉप लिखा हुआ है।

इसमें दो टेबलें दिखाई दे रही है जिसपर फूलों की मालाएं डली हुई है।

इसमें एक बैनर लगा हुआ है जिसपर गेम फोर एनीथिंग लिखा है।

इस चित्र में दो पीले रंग के और एक सफेद रंग का है।

एक ऊपर बोर्ड लगा है जिसका नाम है स्नैक बार ।

इस चित्र में हमें मुर्गियों के चूजे दिखाई दे रहे हैं।